हमें यहां पर कुछ व्यक्ति स्तंभ के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं।

इस तस्वीर में हमें एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान का दृश्य दिखाया गया है।

यहां पर हम कुछ ब्राउन और ब्लैक रंग की फाइल्स भी टंगी हुई देख सकते हैं।

इस तस्वीर में हमें एक सड़क का दृश्य दिखाया गया है।

इस तस्वीर में हमें एक जिम का दृश्य दिखाया गया है।

जहां पर हम कई ज्या तर संख्या में मैट रखे हुए देख सकते है।

हमें यहां पर एक काफी ही मॉडर्न तरीके का सोफा देखने को मिल रहा है सेंटर टेबल भी ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा है।